और जिसमें कपडे लगे हैं पिंक रेड वाइट कलर के और फ्लॉवर्स भी लगे हुए हैं जो बहोत अच्छे लग रहे हैं।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं की चेयर रखा हुआ है सोफा वाला और इसमें ब्लू ग्रे और येल्लो कलर से डिज़ाइन बना हुआ है।

और जो बाउंड्री खींचा हुआ है उसके अंदर वो जिला अधिकारी का आ केबिल है और बाहर बाउंड्री खींचा हुआ है जो व्हाइट और रेड कलर से पेंट है।

मैंरून कलर में जिसके ऊपर न्यूज़ पेपर है उसके ऊपर ग्रेप्स रखे है।

और वाइट ऑरेंज रेड येल्लो पर्पल कलर के बॉल हैं सब। हर बैट के साथ रखे हैं।

और बड़े पेड़ भी हैं काफी उसके बगल में बाउंड्री है। बाउंड्री के ऊपर छड़ लगा हुआ है। सामने भी सब वायर लगे हुए हैं उसके और कही कही मिटटी भी दिखाई दे रही है।

आदमी चेयर पर बैठे हैं उनको कपड़ा से ढ़क कर सेविंग की जा रही है। सामने बड़ा-बड़ा काँच है। फैन है।

यहाँ पर म सब देख पा रहे हैं कि एक मैदान है फील्ड और उसमें एक झुला है।

यहाँ हम देख पा रहे हैं की पीछे एक मकान है। जिसके नीचे एक गेट लगा है और गेट खुला है।

और लड़का चेयर पर बैठा हुआ है। सामने टेबल भी लगी हुई है और उसके सामने पर्दा --

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक रूम है। रूम में अलमीरा है। काफी अच्छी जो लकड़ी से बना हुवा है।